यहाँ पर पेड़-पौधे हरे-भरे भी दिखाई दे रहें हैं बादल भी दिखाई दे रहा दिखने मे बहुत अच्छा लग रहा हैं कांच भी दिखाई दे रहा हैं खिड़की भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर भी दिखाई दे रहा हैं ब घना-घना बादल भी दिखाई दे रहा हैं दिखने मे बहुत अच्छा लग रहा हैं यहाँ पर मशीन भी दिखाई दे रही हैं।

कार्टून भी दिखाई दे रहा बहुत सारा पॉपकॉन भी दिखाई दे रहा गजरा भी दिखाई दे रहा ब अच्छा लग रहा हैं दिखने में--

यहाँ पर कुछ-कुछ पुस्तके भी दिखाई दे रही हैं और तस्वीर भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर चेयर भी दिखाई दे रही हैं और बहोत सारी बाटले भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर बहोत सारे बंदे भी दिखाई दे रहे हैं जैसे मैच खेल रहे हैं यहाँ पर टावर भी दिखाई दे रहा है हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे मैनवाल भी दिखाई दे रहा है।